यह टॉयज का शोरूम है यहां पे टॉयज का एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें एक --

यह मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन है हाजीपुर जंक्शन और यहां पे इतने सारे रिक्शा वाले खड़े हैं और रिक्शा पे भीड़ लगी हुई है रिक्शा पे लोग जाने के लिए--

ये फ्लावर पॉट और गिफ्ट्स की शॉप है जिसमें एक से एक फ्लावर पॉट रखे हुए--

जो कप उसने भी वासेस लग जाते हैं आराम से फ्लावर लग जाते--

दो तीन दुकानें लगी हुई है वहां पे खाद खूद की दुकानें लगी हुई है यहां पे यहां पे शटर लगा है बिजली के बोर्ड लगे हुए है।

और साइड में यहां पे एक बाल्टी रखी हुई है और यहां एक मशीन सी रखी हुई है जिसमें से ट्रांसफर हो रही है गैस और सामने वहां पे एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है।